उसके ऊपर दो बोतल रखे हुए हैं सामने काउच दिख रहा है दो तकिया दिख रही है।

दिख रहे है सफ़ेद कलर के बोक्से रखे हुए है।

तार दिख रहे है आ बगल मे भी बहुत बड़ा पोस्टर लगा है दोनों साइड ।

एक अ पोस्टर लगा हुआ है अ दुकान के शटर के ऊपर जिसमे कोको कोला लिखा हुआ है।

छत दिख रही है बगल में हमको ओ लाइटे जल रही है दिख रही है आ ए.सी. लगा हुआ है।

सामने एक लड़का दिख रहा है जो टी-शर्ट पहना हुआ है

शटर दिख रहा है शटर के ऊपर पोस्टर लगा हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल का।

बहोत बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिख रहे हैं।